यह हमें सीमेंट रोड़ी और ईंट बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं।

सर्कल बनाया हुआ है यहाँ पर लाइट और घास लगी हुई नजर आ रही हैं।

हमें ये पोस्टर नज़र आ रहा है दीवा-- दुकान के बाहर टीन लगी हुई है भित्तर शीशा नज़र आ रहा है।

तरिये और लोहे गाड़ दिए गए हैं उसके बाद यहाँ पर एक लाइट भी लगा दी गई है यह अभी--

यहाँ हमें एक भारतीय स्टेट बैंक --

यह पार्क में बढ़िया-बढ़िया पेड़ लगाए हुए है इसकी डेकोरेशन बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है घास भी लगी हुई है।

नज़र आरही है यह एक बड़ी सारी फ्रेम के अंदर यह फोटो स्लाइड शो के में चला रखी है।

खुला नजारा सामने आ रहा है जहाँ पर पानी को स्टोर किया हुआ है।